के के की फोटो छ रखीअर अगाड़ी बिटिन आप ते दिया जल्दा रोल दिखेण लग्यां यख मा जी थाली छ रखीं जे पर कुछ पैसा भी छन रख्यां।

फोटो मा जी आप देख सकदें की ये फोटो के बैंक की छ लगण लगी जन की आप देख सकदें यख मा जी कालो रंग को शटर छ जा का फंडे बिटिन आप थें डाक सेवा भी होली दिखेण लगी।

अगाडी बिटिन आपते सीसे होल दिखेण लग्युं जेपर इंका निस का कपडा होळा दिखेण लग्यां जोकि काला रंग का छन।

जु की अलग अलग रंग की छन जन की लाल गुलाबी नीली पिछाड़ी बटिन आप ते कुछ गमला भी होल दिखेण लग्यां जु पर की फूल पत्ता छन लग्यां।

पिछाड़ी बिटिन आप ते और दुकान भी होली देखण क मिल की जूं का भितर बिटिन कट्टा छन कुछ रख्यां।

फोटो मा जी आप देख सकदें की यख मा जी भोत सारा लोग कठा छन हुयां पिछाड़ी बटिन आप थें रूक्यां पाणी को ताल होल दिखेण लग्युं।

पिछाड़ी बिटिन कुछ बच्चा बैठ्यां भी छन और पिछाड़ी बिटिन आप ते हरयां भरयां डाला बुरता दिखेण क मिल लग्यां।

फोटो मा जी आप त दिखेण लग्युं की यख मा जी कुछ दुकानी छन जांका भैर बिटिन कुछ लोग होला दिखेण लग्यां कुछ गाड़ी भी होली दिखेण क मिलण की।

फोटो मा जी आप ते दिखेण लग्युं की यख मा जी भूरी रंग की कार छा जै का पिछाड़ी बिटिन आप ते खाली नंबर प्लेट होली दिखेण लगीं।

जखमां जि लोग बैठदां ऊ भि वोलु दिखेण लग्युं और पिछाड़ी बिटिन आपतैं लम्बा-लम्बा खम्बा हर्यां-भर्यां पेड़-पौधा व्होला दिखेण क मिन लग्यां।

एक खिलाडी का हाथ पर बल्ला दूसरा खिलाडी का हाथ पर सफ़ेद रंग की गिन्दु छा फंडे बिटिन आप ते नीलू रंग कु तिरपाल होलु दिखेण लग्युं।

पिछाड़ी बिटिन आप त एक भाषा मा जी कुछ लिख्युं छ लगण लग्युं।

फोटो मा जी आप थें दिखेण लग्युं की यख मा जी एक ऑफिस छा जु की पीलू रंग कु छा ये ऑफिस का गेट का एंच बिटिन आप तें बड़ु सी बोर्ड होल दिखेण लग्युं जे पर कुछ लिख्युं च लगण लग्युं।

जन कि प्याज आलू शिमलामिर्च ह्वेगी पिछाड़ी बिटिन आपतैं प्याज का लाल रंग का कट्टा भी व्होला दिखेण लग्यां जेंका ऐंच बिटिन एक आदमी बैठ्यूं भी छ।